और यहां पर बहोत सारे कार्टन भी लगे हुए है और सामने ही एल_सी_डी भी है।

और यहां पर एक टेबल है जिस पर कप और एक चाय बनाने की मशीन या कॉफी बनाने की मशीन रखी हुई है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक बस स्टैंड है जिसमें बहोत सारे आदमी है और साइड में कंडक्टर भी है।

लाइटें जल रही है और यहां पे फूलों से भी काफी सजावट की गई हैं।

यहां पर साइड में एक कुर्सी भी है एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और दूसरे आदमी ने अपने हाथ में कैप ले रखी है।

इस फोटो में एक फैक्ट्री दिखाई गई जिसका नाम वाले अल्स्टॉम है।

और साइड में एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं।

जोकि उर्दू या तमिल भाषा में है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक झरना बह रहा है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पे बहुत सारा किराने का समान है।

और यहा पर एक खिड़कि है और यहा पर एक चार्जर भी है और यहा पर बहुत सुंदर सुंदर से टूल्स है।

और यहां पर बहोत सारा खुला मैदान भी है कुछ दूरी पर यहां पर बहुत अच्छे अच्छे मकान भी है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक रोड चल रहा है।

जिसपर बहोत सारे आदमी है और यहां पर बहोत सारे वाहन भी है।

जिसका नाम रॉक गोल्ड एकेडमी है।

और यहां पर मेज पर कुछ रखा हुआ है और यहां पर दीवार पर बहुत अच्छी सजावट की गई है।

और यहां पर बहोत अच्छे अच्छे पोस्टर बनाकर लगाए गए हैं और यहां पर नीचे की साइड एक टॉय रखा हुआ है।

इस फोटो में दिखा बेगिया पर एक कमरा है जिसमें बहुत सारे सोफे हैं।

और यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है।

और यहां पर एक पेन होल्डर भी रखा हुआ है और साइड में एक बोर्ड है जिसमें आल आउट लग रही है।

और इनके हाथ में कड़ा और एक धागा भी है पीछे की साइड एक लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे बलून भी रखे हुए हैं और यहां पर कार्टून भी हैं।

और यहां पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर एक केक और बॉडीबिल्डर के फोटो भी है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक बोर्ड लग रहा है जिस पर ओमप्रकाश स्टेशनरी लिखा हुआ है।

जिम में मूर्तियां रखी हुई है जिनमें से एक भोले बाबा की मूर्ति है।

यहां पर एक औरत और एक आदमी खड़ा हुआ है और पीछे की साइड बहुत सारा सामान है।